और देखो ऊपर स वाइट वाइट सफेद सफेद सा आसमान नजर आ रहा है।

और बहोत ही खूबसूरत सा ये मानसा महल दिख रहा है।

बहोत ही सुंदर तरीके से इसे सजाया गया है। यहां पर हमें दिख रहे हैं।

फूलों से सजाई हुई दुकान दिख रही है ऊपर वेलकम्स लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स --

और बहोत बड़ी बिल्डिंग है ये सामने मेन रोड है।